इस दृश्य में एक इमारत दिखाई दे रहा है जिसका रंग गुलाबी है।

दृश्य में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो की एक घर का ढलाई कर रहे हैं।

ऊपर की तरफ एक स्पीकर भी लगा हुआ है।

ऊपर आसमान का रंग सफेद दिखाई दे रहा--

पीछे की दीवाल का रंग लाल और ब्लू दिख रहा है।

ऊपर आसमान का रंग सफेद दिख रहा है कुछ तारे गई हुई है।